शादी का बाराती दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पर टेबल कुर्सी लगा हुआ है छाता भी दिखाई दे रहा है बहुत सा --

और यहाँ पर सरकारी कोई योजना है सारे --

यहाँ पर बहुत भीड़ भड़ाके के साथ बैठे हुए आदमी सभी किताब का दुकान केक का दुकान केश का दुकान --

मैच ए ए सजावट बना हुआ है।

यहाँ पर है।

चाभी टंगी हुई है एक गेट भी दिखाई देते हैं|

बाइके लगा हुआ है इसमें बैलून टंगा --

बहुत बड़ा पोखर है ई पोखर में बहुत पानी --